कुछ लोग खड़े हुए दिख रहे है कुछ लोग बैठे हुए दिख रहे है हरे कलर की घास दिख रही है सफ़ेद कलर की दिवार दिख है।

टाइल्स दिख रही है कुछ अलमारियों के खन बने हुए दिख रहे हैं।

हरे कलर के कुछ पेड़ दिख रहे है पेड़ के तने दिख रहे है।

हरे कलर की कुछ मिर्चियाँ दिख रही हैं।

एक पॉलीथिन बैग दिख रहा पॉलीथिन बैग में हरे कलर की मिर्ची रखी हुई दिख रही है।

कुछ पानी का डाबरा दिख रहा है ये आदमी दिख रहा हैं।

टिन लगा हुआ दिख रहा है कुछ कुर्सियां रखी हुई दिख रही है सफ़ेद कलर की दिवार दिख रही हैं हरे कलर का नेट दिख रहा है ए --